और एक बीच में खड़े होके गा रही है। साइड में डीजे रखा हुआ है। लाइट की व्यवस्था बहोत ही अच्छी हुई है और बहोत ही अच्छा लग रहा है।

सामने एक गाड़ी खड़ी है और एक एम्बुलेंस खड़ी है | दो बसें खड़ी हुईं हैं और मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं ।

और उसके नीचे नंबर भी लिखा है और उसके नीचे एक और बोर्ड लिखा है लिखा है सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और नीचे बैंक है दुकाने भी हैं लाइट जल रही है पास में एक घर हैं।

खरीद रहे हैं सामान बजार टाइप में है और इधर बजार लगी हुई हैं और सभी लोग सामान अपना-अपना खरीद रहे हैं लोग बैठे भी हैं रोड के साइड मे। घर भी बने हुए हैं। पेड़ भी लगे हुए हैं।